कंघी का जूअत परे गया जिस से वो बाल कटवाए गया अगल-बगल बहुत सारे समाने है जिसको आप देख सकते हो।

इस तस्वीर मैं दिखाया जा रहा है चित्रकूट का--

किसी के जीवन से यह पहाड़ एक बड़ा--

का दुकान इसमे अगल-बगल दिखाया कॉपी पेन --

एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है और रोड किनारे बहोत सा --

ये दुकान मामुली दुकान नहीं है बल्कि यह दुकान बहोत ही --

और यहाँ बहोत सारे महिला पुछे बैठे है यहाँ एक अच्छी जगह है।

सनातन धर्म बहोत ही प्रिय--